ये हरे रंग की और लाल रंग की इमारत किस की है ये कोई घर है या फिर कोई हॉस्टल कॉलेज समझ में नहीं आ रहा --

भाई गाम देहात में इसे ही पेट्रोल पंप होया करे आर ई एगो बहुत दूर कते हरियाणा के दिखे है समझ में कोनी आया।

यह सफेद रंग की बिल्डिंग किस चीज की है ये शायद एच_डी_एफ_सी बैंक लग रहा है और यहाँ पर बोह--

यो भी एक इंडियन ऑइल का पेट्रोल पंप है और यह किसी गांधी के इलाके के पेट्रोल पंप है।

ये आर.के. पैलेस ये कोई मॉल जैसा दिख रहा है और यहाँ पर छत में बहुत सारी लाइटें --

यो भी देखलो भाई पेट्रोल पंप और ये के खड़ी है लाल-लालसी अरे अरे कोई दिख भी को नहीं रहा है ।

यह और देख लो भाई सफेद और लाल रंग की बिल्डिंग बहुत तगड़ी सुथरी लागै और भाई एक गाड़ी खड़ी है बहुत सारी बाइक खड़ी है स्कूटी साइकिल सब एके में खड़ा है।

ये एक रेल्वे स्टेशन दिख रहा है यहाँ पर पटरियाँ है लोहे की जहाँ से रेल गुजरती होगी--

ये फिर वही पेट्रोल पम्प दिखा दिया देख लो भाई छोटा सा पेट्रोल पम्प है और कोइ दिख भी नहीं रहा है ये तो कोई गाँव देहात में है पक्का सहरसा बिहार का पेट्रोल पम्प है।

यह भाई एक इंडियन ऑइल की बिल्डिंग है और यो एक पेट्रोल पंप है एड़ एक बाइक खड़ी है और व पेट्रोल भरने वाले किते जा रहें हैं।

--तब आई है सफेद रंग की गाड़ी--